फल काटने के बाद ड्रायर यूज किए कर रहे है।

इस पिक्चर मे मस्जिद का फोटो दिखाया गया है जहाँ मुस्लिम लोग नमाज अदा करने आते है टाइमली

इस पिक्चर में खाना को दिखाया गया है|

बुक को अवलेबल किया गया है ताकी लोग स्टडी कर सकें।

इस इमेज पर एक प्रशासनिक भवन को शो किया गया है से रिलेटेड मीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए--।

ऑफीशियल कार्यालय है बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं बोहोत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का।

इस इमेज पर एक मार्केट को शो किया गया है जहाँ पर पूजा के सामान मिलते हैं बट्टा वगैरा।